पीछे पहाड़ों में बहुत सारा पेड़ है और आगे भी बहुत सारा लंबा पेड़ है।

पीछे एक मंदिर भी है।

उसके सामने बहुत सारे दिए भी जला कर रखे हुए है और एक प्रिंटर मशीन भी है।

और पीछे बहुत सारा पेड़ है और सामने एक ग्राउंड है।

इस तस्वीर पर कुछ लोग है कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी है जैसे कि बंदा गोभी बनाना ऑरेंजेस टमेटोज़ कैप्सिकम ।

और एक जग भी है।

यहां पर एक ग्रीन कलर का घर है जिसपे लिखा हुआ है मिला होमस्टे ।

तस्वीर में हम देख सकते है कि यह चार लोग--

यहां पे बहुत सारी सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगाए हुए हैं।

कुछ लोग यहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं।

उसके सामने छोटे छोटे प्लांट्स भी है।

और पीछे दो ब्लू कलर के बड़े सिंटेक्स भी है।

बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं जिनकी दीवार व्हाइट कलर है और छत ग्रीन कलर की है।

दो वाइट कलर के फैंस भी हैं।

और बहुत सारी व्हाइट कलर की लाइट्स भी है।

एक बाइक है कुछ पेड़ है और सामने इंडियन ऑयल भी लिखा हुआ है।

पीछे एक वाइट कलर का गाड़ी भी है और कुछ लोग भी है।

एक साइकिल और एक बाइक भी है।

कुछ पेड़ भी है और एक आदमी भी है।